जिसमे की दोनों तरफ अलग अलग के कपड़े लगे--

जिसमें की एक कपड़े की दुकान है और एक बर्तन की।

और छत मे तीन लाइटें लगी हुई है।

रोड दिखाई दे रहा है जिसमें की दोनों तरफ मकान है और बीच में--

और नी बीच में एक बेंच और एक चेयर ।

और पार्क के बीच में रंग बिरंगे फ्लावर्स लगे--

रोड पे बहुत सारे दुकाने लगी हुई हैं।

यह एक बेड रूम है।